उधर कुछ दिखाई दे रहा है साइड मे कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ शेर बैठा हुआ है और एक बड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा --

यहां पे एक यहां एक ठेला लगा हुआ है यहां पर कई सारे फल फ्रूट रखे हुए है जो --

तरबूज जामफल सैंफल संतरे से और अनार यहां पे कुछ क्रिएटे रखी हुई है उधर भी ठेला लगा हुआ है यहां पे कुछ बिल्डिंगे बनी हुई है।